वहाँ पर पेमेंट लिख भी पेमेंट खिच कैश भी लिखा होगा वहाँ पर कुछ गुब्बारे भी लगे हुए है वहाँ पर एक फीमेल फीमेल दिखा रहा है मेल दिखा रहा है सॉरी फिर - फिर वो वहाँ पर कंप्यूटर ही वगैरह दिखा रहा हैं।

यहाँ पर ऐसा लग रहा है की सब्जी मंडी की दुकान बहुत बड़ी दुकान जैसी लग रहा है यहाँ यहाँ पे मार्केट लगता होगा बहुत सारे दुकान है मिर्च भी दिखा रही है हरी मिर्च दिखा रही है लाल मिर्च दिखा रही है गोभी दिखा रही है।

इसमें भी कोई जिमवाला काम लग रहा है। जैसे कोई दुकानदारी करता हो। मा यहा से सामान खरीदता हो। वहा पर दो बोतले भी दिखाई दे रही है।